किसी नदी का किनारा दिखाई दे रहा है इस नदी बीचों बीच एक पूल बना हुआ है जो शायद रेल की पटरियों के लिए बना हुआ है और बगल में एक टावर भी लगा हुआ है जिस से कई सारी तारे आती जाती दिख रही है एक छोटा सा घर भी बना हुआ है उस घर के बहार एक कार भी खड़ी हुई है।

जो कि दूल्हा दुल्हन के बेठने के लिए है और कई लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

किसी चर्च का भीतरी हिस्सा दिखाई दे रेहा है जिसमे एक बड़े से चबूतरे पर एक सफेद मूर्ति रखी हुई है जिसमे एक औरत एक आदमी को गोद मे लिए हुए बैठी है।

होटल या रेस्टोरैंट के बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा हैयहाँ पर छोटा सा गार्डन भी है जिस पे कई सारे पौधे लगे हुए है। इस--

जो की तीन की संख्या मे रखे हुए दिखाई दे रहे है और पीछे कुछ और समान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा --